Eclipseइक्लिप्स के साथ शुरूआत के इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत हैं
इस ट्यूटोरियल में हम सीखने जा रहे हैं इक्लिप्स में कैसे प्रोजेक्ट तैयार करें और क्लास जोड़ें
जावा प्रोग्राम कैसे लिखें और इक्लिप्स में जावा प्रोग्राम कैसे रन करें
इस ट्यूटोरियल के लिए हम उपयोग कर रहे हैं उबंटू 1110 इक्लिप्स 37 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपके पास आपके सिस्टम पर इक्लिप्स संस्थापित होना चाहिए
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएँ
इक्लिप्स एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायर्नमेंट है
यह एक टूल है जिस पर आसानी से लिख सकते हैं देबुग कर सकते हैं और जावा प्रोग्राम रन कर सकते हैं
अब इक्लिप्स खोलें
Alt फ़2 दबाएं और डायलॉग बॉक्स में इक्लिप्स टाइप करें और एंटर दबाएं
हमें एक वर्कस्पेस लॉन्चर डायलॉग बॉक्स मिलता हैं
वर्कस्पेस एक लोकेशनस्थान है जहां आपके प्रोजेक्ट से संबंधित सभी डेटा और आपके इक्लिप्स से संबंधित फाइल्स संग्रहित होती हैं
यहाँ एक स्थान पहले से ही है जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है
ब्राउज़ सुविधा का उपयोग करके एक अलग डाइरेक्टरी भी चुनी जा सकती है
अभी के लिए डिफ़ॉल्ट डाइरेक्टरी के साथ आगे बढ़ते हैं
आगे बढ़ने के लिए ओक पर क्लिक करें
आपके पास वेलकम टो इक्लिप्स पेज है
वर्कबेंच पर क्लिक करें जो पेज के ऊपरी दाएँ कोने में है
और यहाँ हमारे पास इक्लिप्स इडे है
अब एक प्रोजेक्ट जोड़ें
फाइल न्यू पर जाएँ प्रोजेक्ट चुनें
प्रोजेक्ट्स की सूची में से जावा प्रोजेक्ट चुनें
ध्यान दें कि हमारे अधिकतर ट्यूटोरियल के लिए हम जावा प्रोजेक्ट का उपयोग करेंगे
नेक्स्ट पर क्लिक करें
प्रोजेक्ट नेम में इक्लिप्सडेमो टाइप करें
एक ऑप्शन पर ध्यान दें जो है उसे डिफॉल्ट लोकेशन यदि यह ऑप्शन चुनित है तो सभी इक्लिप्सडेमो प्रोजेक्ट डेटा डिफ़ॉल्ट वर्कस्पेस में संचित होता है
यदि यह अचयनित है तो ब्राउज़ सुविधा का उपयोग कर एक अलग लोकेशन को भी चुना जा सकता है
अभी के लिए हम डिफ़ॉल्ट लोकेशनस्थान का उपयोग करेंगे
विजार्ड के ठीक नीचे दाएँ कोने में स्थित फिनिश पर क्लिक करें
ओपन एसोसिएटेड परस्पेक्टिव डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है
पर्स्पेक्टिव इक्लिप्स में चीजों को व्यवस्थित रखता है
डायलॉग बॉक्स पर्स्पेक्टिव का सुझाव दे रहा है जो जावा डेवलपमेंट के लिए अनुकूल है
000320 000301 रिमेंबर माय डिसाइजन चुनें और येस पर क्लिक करें
यहाँ हमारे पास प्रोजेक्ट के साथ इक्लिप्स इडे है
अब प्रोजेक्ट में एक क्लास जोड़ें
प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करें न्यू पर क्लिक करें और क्लास चुनें
क्लास नेम में डेमोक्लास लिखें
ध्यान दें कि मोडिफाइयर्स में हमारे पास दो ऑप्शन्स हैं पब्लिक और डिफॉल्ट अभी के लिए इसे पब्लिक रखें
अन्य ऑप्शन्स की अगले ट्यूटोरियल में चर्चा की जाएगी
और मेथड स्टब्स की सूची में ऑप्शन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन चुनें
अन्य ऑप्शन्स की अगले ट्यूटोरियल्स में चर्चा की जाएगी
विजार्ड के ठीक नीचे दाएँ कोने में स्थित फिनिश पर क्लिक करें
और यहाँ हमारे पास क्लास फ़ाइल है
ध्यान दें वहाँ कई विभाग हैं इन्हें पोर्टलेट्स कहते हैं
हमारे पास पैकेज एक्सप्लोरर पोर्टलेट है जो फाइल ब्राउजर की तरह कार्य करता है
हमारे पास एडिटर पोर्टलेट है जिसमें हम कोड लिखेंगे
और आऊटलाइन पोर्टलेट जो हमें प्रोजेक्ट का पदानुक्रम देता है प्रत्येक पोर्टलेट का आकार बदला जा सकता है

मिनिमाइज बटन का उपयोग करके उन्हें मिनिमाइज किया जा सकता है

रिस्टोर बटन का उपयोग करके भी उन्हें पुनः संचित किया जा सकता है
अब अन्य पोर्टलेट्स को मिनिमाइज करें और एडिटर पर ध्यान केंद्रित करें
जैसा कि हम देख सकते हैं वहाँ पहले से ही कुछ कोड है इक्लिप्स ने हमारे लिए तैयार किया है
क्लास बनाते समय हमारे द्वारा चुने गये ऑप्शन्स के आधार पर यहाँ कोड तैयार हो गया है
अब यहाँ एक प्रिंट स्टेटमेंट जोड़ें
टाइप करें systemoutप्रिंटलन हेलो इक्लिप्स स्टेटमेंट के अंत में एक सेमीकॉलन जोड़ें
फाइल पर क्लिक करके सेव करें और सेव चुनें
वैकल्पिक रूप से आप शॉर्टकट कंट्रोल एस का भी उपयोग कर सकते हैं
इस प्रोग्राम को रन करने के लिए एडिटर पर दायाँ क्लिक करें रुन एएस पर जाएँ और जावा एप्लिकेशन चुनें
हम देखते हैं कि यदि कुछ प्रिंट होता है तो आउटपुट कन्सोल आउटपुट दर्शाता है
यदि हमारे कोड में समस्या थी तो समस्याओं को प्रॉब्लेमस्पोर्टलेट पर दिखाया गया होता
यहाँ हैं कि आप इक्लिप्स में जावा प्रोग्राम कैसे लिखें और रन करें
इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं
इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा कि इक्लिप्स में प्रोजेक्ट कैसे तैयार करें और क्लास कैसे जोड़ें
कैसे एक जावा सोर्स कोड लिखें और इक्लिप्स में जावा प्रोग्राम कैसे रन करें
इस ट्यूटोरियल के लिए नियत कार्य के रूप में डिस्प्ले नामक एक प्रोजेक्ट तैयार करें
औरDisplay प्रोजेक्ट में वेलकम नामक क्लास जोड़ें
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट के बारें में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल का उपयोग करके कार्यशालाएँ भी चलाती हैं
ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालो को प्रमाण पत्र भी देती हैं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
धन्यवाद